और ये मतलब नदी में लोग नहा स्नान भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है ये नदी देख --

और इसमें लोग पूजा करने जाते हैं मातारानी के।

यह एक नदी है और नदी के चारो तरफ पेड़ दिखाई पड़ रहे है और नदी के ऊपर पत्थर के टुकड़े भी दिखाई पड़ रहे है।

ये शहर है और शहर के आस-पास मे लोग दिखाई पड़े रहे है और रोड पे लोग अपना सफर करते हुए दिखाई पड़ रहे है रोड के अगल-बगल बहुत अच्छे-अच्छे बिल्डिंग दिखाई पड़ रहे है जो --

सीमेंट बालू का दुकान है जो की इसमें सीमेंट छड़ गिट्टी सब मिलते है और यहाँ पे आगे कर्कट भी दिखाई पड़ रहे है जो की हमलोग के कार्य मे --

ये जिम सेंटर है। जिसमे बोहोत लोग की जिम करने के लिए सुबह के टाइम जाता है और यहाँ पे तीन भाई दिखाई पड़ रहे है।